यहां पर मैगी दिख रही है शान दिख रहा है मीट मसाला दिख रहा है मैंगो दिख रहा है।

पीछे अलमारी पर बोरी नजर आ रही है।

फोटो में एक मछली की दुकान दिख रही है।

लोहे का संदूक दिख रहा है एक बक्सा भी दिख रहा है बड़ा सा।

ये फोटो किसी पार्क की लग रही है।

एक आदमी खड़ा है ब्रिज पर एक सामने से आ रहा है रोड पर।

टेबल पड़ी हुई है बैठने वाली उस पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

फोटो में बहोत सारी राखियां दिख रही हैं।

नीचे एक आदमी खड़ा है जिसने ऑरेंज कलर की शर्ट पेहनी है।

चादर टंगी हैं जिसका कलर येलो और पिंक एक और येलो है।

यहां पर लोहे के खम्भे दिख रहे हैं जिस पर लाइट लगी है।

सामने ऑक्सीजन जीम लिखा हुआ है।

यहां पर एक स्कूटी पर के सामने बंदा दिख रहा है एक।

यहां पर सामने गेट पर लिखा हुआ है।

साइड में इसका मल पड़ा हुआ है सायद ।

और यह एक घास के ऊपर लेटा हुआ है।

सामने एक आदमी दिख रहा है जिसने ग्रे और ब्लू कलर का बैग टांगा हुआ है।

तौलने वाला तराजू भी रखा है मशीन वाला।

यहां पर कुछ छोटे बच्चे हैं और कुछ थोड़े से बड़े हैं।

इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के पेन रखे हुए हैं।

यहाँ ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है जीस पर डेरी डे लिखा है और आइसक्रीम की फोटो दिख रही है।

उसकी दीवारें टूटी फूटी हैं बहुत ही।

एक सीट दिख रही है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक बैग रखा है सी--

एक कारे निकलती हुई दिख रही हैं।

यहां पर लैपटॉप का कीबोर्ड दिख रहा है माउस दिख रहा है।

एक फोटो दिख रही है जिस पर हार भी चढ़ा दिख रहा है।

यहां पर कुछ लोग फोटो खिंचवाते नजर आ रहे है।

यहां पर रास्ते बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं।

और इस पत्थर के ऊपर ब्लू लाइट्स लगी हुई हैं शायद डिजाइन बनी हुई है।

सामने ऊपर सिनेपोलिस लिखा हुआ है।

और टेंट के बाहर कुछ लकड़ी की अलमारी रखी हुई है टीन वाली--

अंदर ऑटो में बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आस पास।

इस फोटो में एक बड़ा सा रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है जिस पर ज्यानिस सिंस उन्नीस सौ छप्पन लिखा हुआ है।

एंट्री पर एंट्री गेट पर रेड और यल व्हाइट कलर के गुब्बाड़े लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक अनुसंधान दिख रहा है।

यहां पर ये जीने के साइड में रेलिंग लगी हुई है चढ़ने के लिए।

पिक्चर पर इशरार अहमद लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है।

नीचे कुछ घरों पर टीन भी पड़ी दिख रही है।

यह फोटो किसी जिम की लग रही है।

यहां पर अलग अलग तरह के जिम करने वाला सामान रखा दिख रहा है।

छत पर पंखा लगा हुआ है व्हाइट कलर की लाइट जल रही है।

फर्श पर वाइट कलर की टाइरि लगी है।